दाढ़ी बनाए बना रहे है।

यहाँ एक मकान का चित्र दिखाया जा रहा है।

कुछ कॉपर की वायरे और हैलमेट दिखाई दे रहा है।

मैं जो लोग सेवा केंद्र है ऐसा प्रतीत होता है।

का चित्र दिखाया जा रहा है इ काफी बड़ा दूकान है।